यह एक ब्यूटी पार्लर का दृश्य है जिसका नाम है श्रेया ब्यूटी पार्लर ।

एक शादी का दृश्य नजर आ रहा है जहां का डेकोरेशन बहुत ही अच्छा हुआ है।

दीवान पलंग में दो चाभी लगने वाले टाइप के दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर सामने में एक ऑफिस भी दिखाई दे रहा है जिस पर काली चेयर रखी हुई है और पीले कलर की भी चेयर है।

यहां पे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है जो की बेंच की तरह है उसके ऊपर में कुछ फाइल रखा हुआ है।

ये एक आरती बुक सेंटर है जहां पर बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिसके ऊपर में इस सेंटर का नाम लिखा गया --

यहां पे कुछ मसीने भी दिखाई दे रही है जो कि ब्लू कलर का है।

और नीचे में बहुत सारे सामाने दिखाई दे रही हैं।

बाहर में एक आदमी भी चल रहे हैं जोकि हाथ में छाता लिए हुए हैं।

ये कोई बैंक का दृश्य है जहां पे बाहर में काफी लोग दिखाई दे रहे हैं।

बगल में अ भगत सिंह को फांसी दिया जा रहा है ये भी दिखाई दे रहा है।

इस किले के ऊपर में भी कुछ घासे नजर आ रही हैं।

आइसक्रीम को शीशे की कटोरी में रखी गई है।

एक नदी है नदी के बगल में एक क्रोकोडाइल नजर आ रहा है जो की लेटा हुआ--

इसको सीसे में पैक्ड करके रखा गया है बीजे को।

बॉटल भी लटके हुए हैं यहां पे और यहां पर कुछ बल्ब भी नजर आ रहे हैं।

कुछ अलग तरीके की दालें भी रखी हुई हैं।

यहा पे रेड चेयर है टेबल्स है और यहा पे एक चैम्बर दिखाई दे रहा है और यहां पे कुछ बोर्ड बना हुआ है।

पीछे में भी दो कुर्सी दिखाई दे रहे है रेड कलर का है।